कैप वाले टी -शर्ट पेहना हुआ है नीचे पे इसने --

सिटींग भी नजर आ रही है और यहाँ का बाउंड्री का कलर मुझे येलो कलर का दे रहा हैं।

बहोत ही साफ़ और सुन्दर दिखाई दे रहे है यहाँ पे मुझे बहोत बड़े - बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।